यहां पर हम सामने देख रहे हैं एक गेट है गेट काफी रंग बिरंगा है गे अ री गे गेट जिसका है वो--

यहां पर हम देख रहे हैं स्लाइडिंग से एक दो बच्चा स्लाइड कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा हैं।

यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में पानी जमा है आस पास बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है।

पेट्रोल पंप का जो मतलब जहां पोस्टर लगा हुआ है वहां पर एक हाथ का डिजाइन बना हुआ है।

यहां हम देख पा रहे हैं एक रूम में एक बेड है यार बेड जो है वो काफी स्टाइलिस्ट है।

यहां रोड में काफी भीड़ दिख देखने को मिल रहा है। एक यहां पर मंदिर भी देखने को मिल रहा है।

ये कोरियर इसका मतलब यहां पर कोई सामान को एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता है।

और बाहर में एगो जनरेटर भी रखा हुआ है और यहां पर जहां काम चल रहा है यहां पर जमीन--

यहां पर हम देख रहे हैं दो ठो गाड़ी दिख रहा है एक वोह लाल गाड़ी है और एक वोह सादा गाड़ी है।

ये एक बहुत सारे यहां पर जो ऑटो है वो भी देखने को मिल रहा है।

ये मोबाइल का फोटो खींचा हुआ है। मोबाइल जो है यहां पर काफी दिख रहा है।

लगता है यहां मोबाइल का डिस्प्ले लगा हुआ है बहुत तरह का मोबाइल है यहां पर--

एक दो आदमी यहां पर अ है जो ठेला से सट सटके खड़े हुए हैं एक आदमी कुर्सी पर बैठकर--